बड़े-बड़े लगे हुए हैं।

बहुत धुप दिखाई दे रहा है | छाया भी आ रहा है।

बैटरी के डब्बे भी है कुछ।

और वहाँ पे लिखा हुआ है।

यह ऊपर से दिख रहा है निचे एक फ़र्श है लाल--

और कुछ महिला जेन्ट्स खड़े हैं अ बेठे हुए भी हैं।

कुछ लोग वहाँ उचास पे बेठे हुए हैं।

निचे की ओर लाईट है | लाईट में फूल जैसा बना हुआ है।

अ ईसा मसी लटके हुए है। जिनका की दोनों हाथ दोनों पैर पे--

बहुत सारे कपड़े पसारे हुए है।

लाल और उजले फूलों से बनाए गए हैं।

वर्क हार्ड ड्रीम बिग ।

यहाँ दो लड़के जा रहे हैं और लाल रंग से यहाँ से वहाँ तक --

और यहाँ पे नीचे का फ़र्श हरा है और सामने एक --

और रेड सॉस रखा हुआ है और सामने अंडा भी रखा हुआ है।